यह एक एस_बी_आई बैंक के बाहर का दृश्य है जिसमें दो गाड़ियां नजर आ रही है।

यह एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य है।

यह एक मां राम प्यारी हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य है।

छत्तों का कलर कत्था है और उसमें काफी सारे छोटे छोटे खिड़कियां बनाए गए हैं।

गेट पे एक बड़ा सा गेट लगाया गया है स्टील का।

टेबल के ऊपर काफी सारे चॉकलेट के डिब्बे रखे गए हैं।

सभी के जड़ पे काली प्लास्टिक लगाई गई है।

पीछे में दरवाजे नजर आ रहे हैं और कुछ तार लटकती हुई भी दिखाई दे रही है।

यह एक काउंटर का दृश्य है जिस पे सेलविन पून लिखा गया है।

इसमें काफी सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं और दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

एक कुर्सी बाहर लगाया गया है और काफी सारे लाइटें भी लगाए गए हैं।

इसमें एक झरना बहता हुआ नजर आ रहा है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं और बाहर में काफी सारे बड़े बड़े पोस्टर भी नजर आ रहे हैं।

दो छोटे छोटे गुंबद भी नजर आ रहे हैं और एक पोल भी नजर आ रहा है।

यह एक बड़े से हाल के अंदर का दृश्य है इसमें काफी सारे सोफे लगाए गए हैं।

बी_के_बी मॉल के अंदर में काफी सारे शीशे के दरवाजे लगाए गए हैं।

यह एक सड़क के किनारे का दृश्य है।

काफी सारे तार भी लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है।

सभी की जड़ों पे प्लास्टिक लपेटा गया है और ऊपर में एक बड़ा सा तिरपाल भी नजर आ रहा है।